और मतलब एक दो दो फूल बने हेंगे एक रेड कलर का एक येल्लो कलर का और ग्रीन सी पत्ती हेंगी।

और डिजाइन भी बनी हुई है। व्हाइट कलर से और रेड कलर से डॉट-डॉट है।

औ न्यू औ औ नीचे बाइके खड़ी हेंगी बैंक के सामने बाइके खड़ी हुई हेंगी जो ब्लैक कलर की हेंगी कुछ लोग हेंगे --

मुझे एक सामने रेस्टुरेंट दिख रही हेगी जिसका बोर्ड हेगा रेड कलर का और ब्लू कलर से लिखा है --